यह इस इमेज़ मे एक लड़का दिख रहा है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और वह सर पर कोई टोपी सी भी लगाया है जो ब्लू कलर की है उसने हाथ मे छुरा पकड़ा हुआ है एक आदमी भी बैठा हुआ है कुर्सी पर जो दाढ़ी बनवा रहा है उसके बाल--

ये किसी बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी -सी और यहाँ पर बैनर्स भी लगे हुए है कुछ --